बड़ा मेन गेट लगा हुआ है अंदर ग्राउंड है हरा सा दिख रहा है आगे कुछ रेड-रेड सा भी दिख रहा है।

इ व्हाइट कलर का मंदिर है यह व्हाइट कलर का मंदिर है मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है।

साइड मे बहुत सारे पेड़ हैं इधर दिखाई दे रहें हैं और यहां बहुत बड़ी नदी है बहुत ही सुंदर लग रहा है बहुत हरे पेड़ दिखाई दे---

यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी हुई है बीच में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है और इस साइड में भी कुछ पेड़ देख रहे हैं।